और कुछ औरतें भी हैं और यहां से एक आदमी पैदल जा रहा है यहां पर भारत का झंडा भी टंगा हुआ है।

कुछ आदमी और कुछ औरते आए हुए है कुछ कुर्सियों पर बैठे है कुछ खड़े है।

इसके बाहर एक गाड़ी खड़ी है।

इस फोटो मे हम देख सकते है कि यह एक--

आदमी और औरतें खड़ी हुई है जो सभी अपना अपना सामान बेच रहे हैं।